दे रहा है जो की है हरी-हरी पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

दूध भी बोहत काफी मोटा दूध हैं।

और यहाँ पे जो है की हर एक प्रोडक्ट पे मिलता है।

और उ जो है प्रोटीन से रिलेटेड और अंद --